इस तस्वीर में ज्यादा लोग नहीं नजर आ रहे हैं ये शायद समारोह के बाद कि तस्वीर है वहीँ कुछ कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं वहीं कुछ कुर्सियों पर से परदे हटाए जा रहे हैं।

यह एक शादी समारोह या फिर किसी मेले या दुर्गा पंडाल की तस्वीर लगती है जहां पे मेन गेट को बोहोत सारी लइटों य-और जगमगाती राइस लाइट --

रिक्शा के मालिक वही इस सड़क पर कोई यात्री अभी नहीं दिख रहा हैं ये रात के समय की तस्वीर हैं।

ये बच्चो के खेलने के प्लेग्राउंड है जो रंग बिरंगे कलरों व रंग बिरगें थीमो से सजाया गया है। ये बच्चो के खेलने की जगह होती है जहाँ वो रोज अपने अविभावक के साथ आते हैं।

यह एक शादी के फंक्शन की तस्वीर है जहाँ पे एक व्यक्ति एक शादी के मंडप के गेट के सामने खड़े हो के तस्वीर के लिए पोस करता हुआ दिखाई दे रहा है।